एक आदमी यहां से गुज़र रहा है।

यह तस्वीर छोटे बच्चों की की है।

यहां पर दो मेज भी दिख रहे हैं मेज पर दो गमले रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक मोटरसाइकल भी हमें तस्वीर में दिखाई दे रहा है।

मैं स्टेज को बहोत सुंदर ढंग से सजाया हुआ दिखाई दे रहा है।

अ कुछ औरतें मूर्तियों की पूजा कर रही हैं मूर्तियों के--

यह तस्वीर एक ग्राउंड की है।

यहां पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीछे बहुत सारे कंप्यूटर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर में एक टाइल इंडस्ट्री दिखाई दे रही है।

नर्सरी में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं।

यह दृश्य एक हॉस्पिटल का है।

यह तस्वीर एक स्कूल की है।

के स्टेज पे बच्चे डांस परफॉर्मेंस दे रहे हैं।

यह तस्वीर एक दरगाह की है।

यहां पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।